और पीछे कुछ कस्टमर खाना खा रहे हैं जो हमें यहां पर दिखाई दे रहे हैं।

बादल भी बहोत सुंदर आसमान में जो है नजर आ रहे हैं देख कर बहोत ही अच्छा--

ये एक केबिन की तरह दिख रहा है।

आगे फ्रंट में ब्राउन कलर का टेबल लगा है चेयर लगी है और दोनों तरफ जो है विंडोज में शीशे नजर आ रहे हैं।

और व्हाइट और ब्राउन कलर का बहोत ही अच्छा कंबीनेशन है कर्टेन्स का जो हमें नजर आ रहा है।

ये हमें एक मैदान के अंदर का नजर आ रहा है इसके बाहर हमें बाइक्स दिख रही हैं।

ये एक सब्जी मंडी नजर आ रही है जहाँ पर लोगो ने सब्जी लगा रखी है और तिरपाले लगी हुई है ये बारिश --

आसपास भी सोफे लगे हुए हैं हो सकता है यह फर्नीचर शॉप हो।